यहां पर अनेक प्रकार के जूतों जूते रखे गए हैं।

लोगों की जनसंख्या भारी मात्रा में है।

इस रिजॉर्ट की लिखावट से यह पता चलता है।

यहां पर कुछ पुरुष आपस में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं।